एक कुर्सी भी है और पेंट की बाल्टियां भी--

यहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा--

बाहर के साइड पर रोड बाइक और गाड़ी--

इसके अंदर एक बाइक खड़ी हुई है।

नीला आसमान सफेद बादलो से भरा हुआ--

बहोत से लड़के और लड़कियां--

वो शायद आपस में मिलकर--

रिक्शा के पास खड़ा है जो इस रिक्शा का मालिक होगा इसे चलता होगा।

टेलरिंग शॉप है इसमें सिलाई की बहुत सारी मशीनें --

पीछे पेड़ है हरा भरा पेड़ है।

पेड़ लगे हुए है यहां पर--

यहां पर वो रेस लगा रहे हैं।